टाइल्स देखने को मिल रहा है।

उसका गेट वाइट से पेंट है।

कलर से पेंट किया हुआ है।

दिवार के ऊपर लाइट लगा है।

मुझे यहाँ पर के अंदर का फोटो है।

ऊपर मे बहुत सारा लाइट लगा हुआ है।

इन्वेस्टर लगा हुआ हैं ।

और ब्लू कलर का जींस पहना हुआ हैं ।

नदी का पानी एकदम ताला पानी --

स्टीकर सब रखा गया हैं ।

के पीछे कपड़ा टंगा हुआ हैं ।

के अंदर लाइट लगा हुआ हैं ।

पार्ट के अंदर का फोटो देखने को मिल रहा हैं ।

रोड पर दो आदमी देखने को मिल रहा हैं ।

बैलून भी लगा हुआ है बहुत सारा उससे ऊपर --

बहुत लाइट लगा हुआ है ।

साइकिल पूरा खिलौना बना हुआ है ।

बहुत सारे कुर्सी सब रखा हुआ है ।

लेटर्स इधर बड़ा पाड गया हुआ है ।

घर बहुत पुराना है ।

घर से नीचे हमें ए_सी देखने को मिल रहा है ।

स्कूटी देखने को मिल रहा है ।

रखा गया है आसपास बहुत सारा पेर --

पिट्ठी पर बैग टांगा हुआ है ।

जनरेटर पीला कलर का है ।

मुझे यहाँ पर बहुत दी स शीशे के अंदर दो-तीन खिलौने हैं ।

और वह मोटरसाइकिल तो धो रहा है ।

ये इलेक्ट्रिसिटी मोटर लगा हुआ है ।

उसके बगल में यहाँ पर एक --

के बगल में एक डब्बा रखा हुआ है ।